घड़ियां यहां पे दिखाई दे रही हैं यहां बहुत सारी अलमारी है जिसमें बहुत सारे अलग अलग किसम के तोहफे दिखाएं दिख रहे हैं।

प्लंबर के लिए यहां पे बहुत सारे पाइप जो कनेक्शन में लगते हैं।

और नीचे हरे कलर की ग्रास का काफी साफ दिखाई दे रही है ऊपर नीला आसमान हैं।

यहा बाहर ही दो शेर दिख रहे है जो पिलर पे बैठे है।

ये एक पार्क की पिक्चर हमें दिखाई दे रही है जहां पे बड़े बड़े सारे हरे कोकोनट के पेड़ दिख रहे हैं।

दीवार पर यहां पे पंखा लगा हुआ है तवा दिख रहा है काउंटर बना हुआ हैं।

दरवाजा दिख रहा है जो की स्टील से बना हुआ है स्टील और कत्थई कलर का ये दरवाजा है।

ये एक झंडा वंदन का फोटो है जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है।

ये ग्राउंड में लहराया गया है जहां पे कुछ पौधे हरे कलर के पेड़ यहां पे हमें दिख रहे हैं।